इस इमेज में चार लेडीसे खड़ी हुई हैं यहाँ एक ह कोई संस्था बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ एक पत्थरों का बहुत ऊंचे --

एक रंगोली के बनाते हुए दिखाई दे रही है यहां बच्चियाँ अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं | यहां एक सामने चैनल गेट है।

इमेज मे एक ह बिल्डिंग बहुत बड़ी दिखाई दे रही है यहां जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं यहां बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो एक बहुत बड़ा पेड़ दि --

कुछ चौत्रों पे । चबूतरो पे कछु दस पद्रह मंजिल चबूतरा पर। कछु छः सात मंजिल चबूतरा पर। इनके आस-पास पूजन करते हुए। आदमी घर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बोहोत साडी मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही है एक कटा दिखाई दे रहा है।

भी अहा स्टेट बैंक एटीएम मशीन यहां इस कमरे में रखी हुई कांच लगी ऐसी लगी हुई यहां एक बैग टांगी--

यहां बहोत से लोग खड़े फोटो निकलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइकें दिखाई दे रही हैं। गुब्बारे लगे हुए हैं लाइटों में दिखाई दे रहे हैं।